यहां पर कुछ बाबा है यहां पर पूजा कर रहे हैं। कुछ मूर्तियां रखी हुई है। यहां पर दीपक जल रहा है।

थाल भी रखा हुआ है यहां पर मूर्तियां काफी सारी रखी हुई है बल्ब लग रहा है। यहां पर बल्ब --

और जे मिस्त्री अपने काम को लगे हुए हैं ईट चिनाई कर रहे हैं यहाँ पर एक मथना ये धरा है एक मिस्त्री उस तरफ लग रहा है | पिलर बना--

हेलो गाइस यहां पर मुझे कुछ नजर आ रहा है कुछ व्यक्ति बॉल खेल रहे हैं फुटबॉल यहां पर कुछ ब-बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। यह जाल में भीतर --